चट्टान के ऊपर कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं जो हरे भरे दिख रहे हैं।

एक सड़क दिख रहा है जिसपर बहोत से गाड़ी मोटर चल रहें है।

यहाँ पर हॉल को दिखाया गया है। हॉल मे कई कलर के झालर लटकाये गये हैं।

जिसमें बोहोत सारे मईदुर गिट्टी सीमेंट को ढलैया दे मशीन में डालके ढलैया का कार्य कर रहे हैं।